छत है छत पर सेंटिंग बनता है।

और गमलों में फूल पत्तियाँ लगी हुई हैं ब्लैक कलर का सोफा --

यह एक रोड है रोड पर सामने से एक कार आ रही है।

गार्डन लग रहा है यहां पर लाल कलर के गमले रखे हुए हैं।

पीले और सफेद कलर के झंडे लगे हुए हैं।

एक चादरों का शेड डला हुआ है।

और एक ए_सी लगा हुआ है और दो पंखे लगे हुए है।

यहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ है।

और एक लड़के का फोटो बना हुआ है।

फॉर टू सेवन वन फॉर फाइव जीरो --

तीन बड़े पिलर हैं एक सफेद कलर का और दो ऑरेंज कलर से पुते हुए हैं।

और कुछ बेंच और कुर्सियां रखी हुई है जिस पे--

येह रंग बिरंगी पनियों के बंडल रखे हुए हैं।

और पिंक कलर का पिलर पुता हुआ है और सफेद कलर की छत --

यह एक जींस पहेनकर पिंक कलर की शर्ट पहने हुआ है।

एक छोटा सा गुंभर बना हुआ है जिसके ऊपर शेर का--

लगा हुआ है और सारे में हरियाली हो रही है।

और इस जालियां है बहोत सारी--

बहुत सारे रूम वगैरह दिख रहे हैं।

एक उपर जाली पर भी आकांक्षा नाम लिखा हुआ है।

लंबा रोट बना हुआ है जो कि मिट्टी का है।

और आजू-बाजू पहाड़ और पेड़ पत्तियां--

इसके सामने एक ज्यादा का शेड डला हुआ है।

छोटी छोटी सी घास उग रही है और साइड में दो पेड़ लगे हुए हैं।

यह चित्र जो दिख रहा है इसमें चट्टानों के बीच में--

और इसमें झंडा भी लगा हुआ है।

इस चित्र में जो ये डमी दिख रही है जो लाल कलर के लहंगा पहने हुए हैं।

चर्चेज दस दिन में ये अंकल बाहर निकल रहे हैं।

और यहां खजूर के पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं सामने मल्टियां बनी हुई हैं।

औ यहां बहुत बड़ा तालाब है और लोहे की जालियां बनी हुई हैं।

स्टेज पर बैठी हुई डांस कर रही है।

स्टील की रेलिंग बनी हुई है और यह बिल्कुल साफ सुथरा--

और उसके पास एक लड़का बैठा हुआ है जो नीले कलर के शर्ट पहने हुए है।

और इस ऊंचे पहाड़ी से नीचे का पूरा सब कुछ बहुत खूबसूरत नजारा दिख रहा है।